और ऊपर में बहोत सारा छोता छोता लाइत दिखाई दे रहे है।

जय पर सब्जी का मार्केट दिखाई दे रहा है।

कपड़ा का दुकान भी दिखाई दे रहा है बहुत सारे स्कूटी भी है।

और यहां पर कैलेंडर भी दिख रहा है।

यहां पर मुझे फादर लोग दिखाई दे रहे--

कुल का माला भी दिख रहा है।

कार्टून बॉक्स दिखाई दे रहा है।

यहां पर मुझे दुकान दिखाई दे रहे।

पहाड़ में मुझे बर्फ चिपका हुआ भी दिखाई दे रही है।

कुछ ड्राई फ्रूट्स दिखाई दे रही हैं पीछे मुझे खाने का समान चिप्स के पैकेट्स रखा हुआ भी दिख रही है।

फ्लावर के बड़े बड़े वेष भी दिखाई दे रही है और एक सिरी दिख रही है।

ड्रम बजा रहे हैं बड़े बड़े यहां पर मुझे आस पास बहोत सारे बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

ग्लास का टेबल दिखाई दे रहा है।

मुझे बाहर में आदमी लोग खड़े होते हुए भी दिखाई दे रही है।

बाहर में पेल दिखाई दे रही है एक बैठने वाला झूला जैसा भी दिखाई दे रही है।

झुका हुआ लकड़ी को जमा किया गया भी दिखाई दे रहा है।

एक बड़ा सा सीढ़ी बैठने के लिए भी दिखाई दे रही है।

यहां पर एक गेट दिखाई दे रहा है।

बहोत सारा पोस्टर लगाया है।

यहां पर मुझे रास्ता दिखाई दे रहे हैं रस्ता का किनार में मुझे बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर मुझे ये आदमी दिख रहा है।

बिल्डिंग में यामाहा पेट यामाहा लिखा हुआ है।

और अंदर में भी बहोत सारा बाइक और स्कूटी रखा है।

यहां में मुझे जिम दिखाई दे रही है बहोत सारे मसल बनाने वाला मशीन दिखाई दे रही है।

माइक भी दिखाई दे रही है पिंक कलर का टेबल क्लॉथ है जिसमें बहुत सारा फूल है।

यहां पर मुझे दो घर दिखाई दे रही है।

मुझे यहां बहोत सारे गाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं।

मुझे यहां पर बहोत सारे जंगली पेड़ दिखाई दे रही है।

मुझे पीछे में एक लाइट भी दिखाई दे रही है।

ब्लू कलर का पोस्टर है और गाड़ी भी दिखाई दे रही है।

और मेडल भी रखा हुआ है बैलून से मिकी माउस का तस्वीर बना हुआ भी दिखाई दे रही है।

झोपडी का तस्वीर भी बना हुआ है जिसमें जीरो वेस्ट विलेज लिखा हुआ है।

अंदर मुझे बहोत सारे बिल्डिंग दिखाई दे रही है और लाल कलर का पोस्टर भी दिखाई दे रही है।

और आसपास बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रही है।

यहां पर एक ब्रिज दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे दारू का दुकान दिखाई दे रही है।

दुकान में बहुत सारा दारू अलग अलग रखा हुआ है।

अपने सर में गीटा बोक रहे है और मुझे यहां पर स्टील के प्लेट भी दिखाई दे रही है।